मुर्गियाँ नजर आ रहे हैं एक दाना रखा हुआ --

सामने मुझे एक पुल नजर आ रहा --

नीचे ऑरेंज और गुलाबी कलर का रंग दिखाई दे रहा।

नदी भी दिखाई दे नहीं दिख रहा।

है नीला हलका आसमान दिखाई दे रहा --

सामने मुझे एक हॉस्पिटल भी नजर आ रहा है।

सामने मुझे बहुत सारा हरी घांस और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

साइड में कलर की पुताई दिखाई दे रही है ए.टी.एम. सफ़ेद कलर से पुता है इसका गेट |